बोतल भी दिखाई दे रही है प्लास्टिक की और चार्जर भी दिखाई दे रहे हैं सैलो टेप दिखाई दे रहा है।

होलसेल दुखाने दिखाई दे रही है और नीचे की ओर भी बहोत सारे कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है रास्ते में--

यह फोटो एक कमरे के अंदर ले गई है इसमें सोफा सेट लगाए गए हैं और एक बीच में टेबल रखा हुआ है और एक व्यक्ति--

एक टेबल लगा हुआ है और एक व्यक्ति दीवार के पीछे भी दिखाई दे रहा है सामने--

इसके साथ परेपेभो दो तीन कारे और दिखाई दे रहे है और एक कार में केमिकल --

एक बंदा स्टेज के ऊपर बैठा है और जो लोग स्टेज के बाहर खड़े हैं।

दुकान यह फोटो कमरे के अंदर एक दुकान खुली गई है दुकान एक काउंटर बनाया गया है काउंटर के ऊपर एक लैपटॉप दिखाई दे रहा है और एक--

लैंडलाइन फोन भी दिखाई दे रहा है इसके साथ लैपटॉप के साथ एक मशीन और दिखाई दे रही है और साइड में एक लैपटॉप और दिखाई दे रहा है।

एक डोमिनोज की शॉप दिखाई दे रही है इसके अंदर बहोत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं और--

इस फोटो में ये यह फोटो एक होटल के बाहर से ली गई है इसमें--

ये एक शीशा लगा हुआ है और एक गेट के अंदर कुछ--

हल्का सा टेबल भी दिखाई दे रहा है कमरे के अंदर लाइट जली हुई दिख रही है।